बाउंड्री के बाहर बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं बाउंड्री का मेंन गेट ब्लैक कलर का है।

पार्क में टाइल्स भी लगी हुई है।

टेबल पर फाइबर के प्लेट में आइस क्रीम भी रखे हुए है जो कि अलग अलग फ्लेवर के हैं।

इसके जमीन पर सिल्वर कलर की कारपेट बिछी हुई है और कुछ गेंदों के फूल भी रखे हुए हैं और केले का पेड़ भी है वहां।

रोड पर काफी व्यक्ति भी खड़े है।

और उसके बगल में एक कॉफी भी रखा हुआ है।

यह एक कपड़े दुकान का दृश्य है इसकी आलमारी में रंग बिरंगी अनेक प्रकार की साड़ियां रखी हुई है।

एक नारियल का पेड़ भी है और बच्चे घूम रहे--

आगे में गेंदों का फूलों का माल बना हुआ है वो भी गेट सजा हुआ है।

इसकी दीवार पर एक फोटो भी है इस कमरे में टेबुल पर एक बोटल रखा हुआ है और कपड़े का टुकड़ा--

और नीचे में वाइट कलर की टाइल्स बिछी हुई है इसके सीलिंग में गोल गोल लाइट भी लगे हुए हैं।

यह एक माल का दृश्य है माल के नीचे में व्हाइट ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई है माल के चारों तरफ छोटे छोटे एल_ई_डी बल्ब भी लगे हुए है।

इस बिल्डिंग के आगे बहोत सारे छोटे-छोटे खिड़की हैं और बहोत सारे दरवाजे हैं जोकि एक समान है।

बिल्डिंग के आगे कपड़े भी रखे--

रोड पर अनेक प्रकार की गाड़ियां चल रही है जैसे स्कूटर बाइक मोटरसाइकल वैन ।

स्टेज पर येलो कलर का कपड़ा लगा हुआ है और सीढ़ियों में बैगनी कलर का कपड़ा लगा हुआ है।

और नीचे में वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई हैं टाइल्स पर ब्लैक कलर का कॉरपेट बिछे हुए हैं और अनेक प्रकार की गाड़ियां लगी हुई है।

इस दुकान में अनेक प्रकार के वस्तुएं रखे हुए हैं जैसे बेल्ट पर्स पोंछने का सामान।

चावल डिबिया क्रीम पाउडर कपड़े सॉक्स इत्यादि अनेक प्रकार के चीजे रखे हुए--

यह एक बड़े से फैक्ट्री का दृश्य है फैक्ट्री का आगे का कलर व्हाइट है और साइड में ब्राउन कलर का है।

यह एक बड़ी सी पुराने जमाने का घर है।

इसकी ऊपर की दीवार व्हाइट पुट्टी से किया हुआ है और नीचे में व्हाइट टाइल्स बिछी हुई है।